सी और C में फंक्शन्स कॉल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन्स कॉल्स के प्रकारों के बारे में जानेंगे जैसे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय वेल्यू कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रिफ्रेंस हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू के परिचय के साथ शुरू करते हैं
यह फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने की पद्धति है
जब हम वेल्यू द्वारा वेरिएबल पास करते हैं तो यह वेरिएबल की कॉपी बनाता है
फंक्शन में पास करने से पहले
फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स में किए गए बदलाव फंक्शन में वैसे ही रहेंगे
यह फंक्शन के बाहर प्रभावित नहीं होंगे
फंक्शन कॉल बाय वैल्यू पर प्रोग्राम देखें
मैंने एडिटर पर प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया हैमैं केवल इसे खोलूँगा
कृपया ध्यान दें हमारा फाइलनाम callbyvalसी है
इस प्रोग्राम में हम संख्या के घन की गणना करेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हमारे पास एक आर्गुमेंट के रूप में इंट एक्स होते हुएफंक्शन क्यूब है
इस फंक्शन में हम एक्स के घन की गणना करेंगे और एक्स की वेल्यू रिटर्न करेंगे
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हम एन को 8 वेल्यू देते हैं एन एक इंटीजर वेरिएबल है
फिर हम फंक्शन क्यूब को कॉल करते हैं
और एन की वेल्यू और एन के घन को प्रिंट करेंगे
और यह हमारा रिटर्न स्टेटेमेंट है
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस callbyvalसी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस वाल
एंटर दबाएँ
अब टाइप करें val एंटर दबाएँ
आउटपुट प्रदर्शित होता है क्यूब ओएफ 8 इस 512
अब हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे
अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
यह फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने की अन्य पद्धति है
यह पद्धति वेल्यू के अंदर आर्गुमेंट का पता कॉपी करती है
फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में किए गए बदलाव उनको बाहर प्रभावित कर सकते हैं
इसमें हमें आर्गुमेंट को प्वॉइंटर प्रकार के रूप में घोषित करने की जरूरत है
फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस पर एक उदाहरण देखें
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम callbyrefसी है
यह stdioह हमारी हेडर फाइल है
उसके बाद हमारे पास फंक्शनswap है
यह फंक्शन वेरिएबल्स की वेल्यूस बदलेगा
आ की वेल्यू ब की वेल्यू में और उल्टे क्रम से संचित होगी
आप देख सकते हैं कि फंक्शन में पास आर्गुमेंट्स प्वॉइंटर प्रकार के होते हैं
यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल ट घोषित किया है
पहले आ की वेल्यू ट में संचित होती है
फिर ब की वेल्यू आ में संचित होती है
और फिर ट की वेल्यू ब में संचित होती है
इस तरह वेल्यूस बदलती हैं
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स आई और ज घोषित की हैं
फिर हम य़ूजर इनपुट्स के रूप में आई और ज की वेल्यू लेते हैं
एम्परसैंड एम्प्रसैंड आई और एम्परसैंड एम्प्रसैंड ज आई और ज के मेमोरी का पता देगा
पहले हम स्वेपिंग से पहले की वेल्यूस प्रिंट करेंगे
फिर हम स्वेप फंक्शन को कॉल करेंगे
और हम स्वेपिंग से बाद की वेल्यूस प्रिंट करेंगे
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस जाएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस कॉलबायरेफ डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस रेफ एंटर दबाएँ
अब टाइप करें डॉट स्लैश रेफ एंटर दबाएँ
हम देखते हैं enter थे वैल्यूज मैं 6 और 4 प्रविष्ट करूँगा
आउटपुट प्रदर्शित होता है बेफोर स्वैपिंग 6 एंड 4 आफ्टर स्वैपिंग 4 एंड 6 अब देखें कि C में समान प्रोग्राम निष्पादित कैसे करें
मेरे पास कोड है इसके माध्यम से करें
यह दूसरा प्रोग्राम है फंक्शन कॉलबायरफरेंस ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम callbyrefसीपीप है
कोड के माध्यम से करें
यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस का उपयोग कर रहे हैं
फंक्शन डिक्लेरैशन C में समान है
इसमें हम एम्परसैंड एक्स और एम्परसैंड य के रूप में आर्गुमेंट्स पास करते हैं
यह एक्स और य का मेमोरी पता देगा
फिर हम वेल्यू को स्वेप करेंगे
बाकी कोड हमारे सी कोड के समान है
प्रिंटफ स्टेटमेंट काउट द्वारा रिप्लेस होता है और स्कैन्फ स्टेटमेंट सिन द्वारा रिप्लेस होता है
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस callbyrefसीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस रेफ1 एंटर दबाएँ
अब टाइप करें डॉट स्लैश रेफ1 एंटर दबाएँ
यहाँ यह प्रदर्शित होता है Enter वैल्यूज ओएफ आ एंड ब मैं 4 और 3 प्रविष्ट करूँगा
आउटपुट प्रदर्शित होता है
बेफोर स्वैपिंग आ एंड ब 4 एंड 3 आफ्टर स्वैपिंग आ एंड ब 3 एंड 4 इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू
और फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस
नियत कार्य के रूप में
C में कॉल बाय वैल्यू का उपयोग करके संख्या के घन की गणना करने के लिए समान प्रोग्राम लिखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें